यहाँ पर रंग-बिरंगी लाइट है टाइल्स लागल है मजा आवल है

वेलकम लिखल हई तिरंगा के छाप हई अंगूरी दुगो लउकइत हई और धुलाई पोलिश रंगाई किया जाता है लिखल हई--